और एक कोई मिट्टी का कुछ दिखाई दे रहा है काँच की गिद दिखाई दे रही है कास्त दिख रही कुछ पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे है सब कॉस्ट्ली दिखाई दे रही है आगे एक औरत घर घर दिखाई दे रहा हैं।